चित्र मे एक सड़क दिखाई दे रही है जिसके सामने एक पूल दिखाई दे रहा है पूल पर बड़े बड़े अक्षरों से कुछ लिखा हुआ है।